ये एक चित्र है। इस चित्र में एक मंडप दिखाई दे रहा है। जो मंडप है वो पीले और सफेद रंग के पर्दों से सजा हुआ है। उसके सामने एक आदमी खड़ा है।

इस चित्र के अंदर एक खूबसूरत सा पहाड़ बना दिखाई दे रहा है जो --